एक अ एक पर्ची है पर्ची में एक टाईल्स की पिलर खड़ा हुआ है इस पिलर से उस पिलर तक टाईल्स गोल बना हुआ है।

दो गमले रखे हुए हैं एक स्टील का दोनो साइड से सा बना हुआ है।